एक रोड बनी हुई है उस पे एक आदमी फोन पे बात करते हुए आ रहा है और आसपास कुछ बड़े पेड़ लगे है।

और कुर्सी पे कुछ सामान रखा हुआ है चश्मा रखा हुआ है बॉटल रखी हुई है और टावल वागेरह रखा है पीछे कुछ कबोर्ड दिख रहे है जिस में भी व्हाइट कलर की--

यह काफी सुंदर से शाम का समय है जिसमें सूरज डूब रहा है और पूरा आसमान ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है।